इस दृश्य में बहोत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं कुछ ने अपने हाथ में त्रिशूल तलवार लिया है कोई भाला लिया है जो कि सफेद रंग का है।

ऊपर में एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसपे इंग्लिश में पॉपुलर हाऊस लिखा हुआ है।

ऊपर के आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ रहा है।

नीचे ग्राउंड में कुछ सफेद रंग के कुछ कुछ कचड़े पड़े हुए हैं।

नीचे साइड में सीढ़ियां भी बनाई हुई हैं जिस पे साइड पे भूरा रंग का बनाया हुआ है।

यह दृश्य एक डेम का है जहा पे एक नाव चल रहा--

बादल का कलर सफेद दिखाई पड़ रहा है।

पहाड़ के गुफा के बीच में खड़ा है।

साइड मे दो तीन तस्वीरे चिपकाई हुई है।

इस दृश्य में एक स्कार्पियो दिख रहा हैं जो कि सफेद और काले रंग में हैं जिसके दोनों दरवाजे खुले हुए है।

काउंटर का टेबल का कलर भूरा और सफेद है।

साइड में दो डस्टबीन रखे हुए है एक लाल रंग के और एक पीले रंग के हैं।

नीचे दुकान पे बाहर में शीशे लगाए हो उसपे सफेद रंग का लंबा एक पोस्टर लगाया हुआ है।

यह दृश्य हॉस्पिटल का है जहां पे बहोत सारे बेड लगाए हुए है।

पीछे दीवार पे दो बोर्ड लगाए हुए हैं जो कि सफेद रंग के हैं दीवार का रंग भी सफेद है।

इस दृश्य में आगे की और फूल से बहुत सारे डेकोरेशन किए हैं जो की लाल पीले सफेद और नीले रंग के फूल से है।

अंदर में एक ट्रक दिखाई पड़ रहा है जो की धुंधला है।

उसपे पीले रंग से स्वादिष्ट वाटिका रेस्टोरेंट एवं मैरिज हॉल गार्डन लिखा हुआ है।

बगल वाले दीवार पे कुछ फोटो टांगी हुई है।

साइड में एक बोर्ड लगाया हुआ है जोकी सफेद रंग का है उसे पे बटन दिए हुए हैं और लाल रंग का इंडिकेटर भी दिखाई पड़ रहा है।

साइड में बहोत सारे चूड़ी की डब्बे दिखाई पड़ रही हैं।

और यहां बहुत सारे लोहे के बना के डिजाइन से बनाकर रखे हुए हैं।

शटर का कलर भूरा दिखाई पड़ रहा है शटर में दो ताले दिखाई पड़ रहे है।

उसपे एक दो स्कैनर रखा हुआ है साइड में एक चेयर लगाया हुआ है जोकि काले रंग के हैं।

दृश्य एक पेट्रोल पंप का है जहां पे एक नीले और सफेद रंग के पेट्रोल पंप मशीन है।

बगल में पोल दिखाई पड़ रहा है और लाइट दिखाई पड़ रहा --